उसमे व्हाईट कलर के कपडे बिछाये गये है।

यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे है सीढ़ी के ऊपर बगल में घास है छोटी - छोटी लगी है रेलिंग हरा कलर का है यहाँ पे छोटा सा घर है यहाँ पे लड़की जो बैठी है वो पीला कलर का कपडा पहनी हुई है।

एक लंबी सी सड़क है यहाँ पे बहोत सारे पेड़ लगे हुए है पेड़ में उम्म वाइट और गुलाबी कलर का पेंट हुआ है ।

पे एक छोटा सा दीवाल है उसमें गाइड मैप ऑफ़ बहड़ का नाटक नेशनल पार्क लिखा हुआ है जो ग्रीन कलर में लिखा है।

एक बड़ा सा सड़क है जिसके बगल में बहोत सारी बिल्डिंग्स है।

यहाँ से एक लड़का जा रहा है और एक लड़का उधर साईड में खड़ा है और इधर बाईक खड़े है बोहोत सारे और बगल में बहोत सारे कार्स खड़े हुए हैबिल्डींग व्हाईट कलर का है।